यह एक रखा है अ --

तस्वीर बनाई गयी है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भगत सिंह झांसी लक्ष्मी रानी लक्ष्मी बाई --

प्रकार के साधन आए हुए है और वे सभी --

यह दृश्य एक मूर्ति का है और यह मूर्ति --

यह दृश्य --

यह दृश्य किसी कंपनी या वेयरहाउस का है जहाँ पर --

यह दृश्य किसी जिम का है और जिम का नाम है एडिशनल जिम क्लब और इस जिम के बाहर--

कुर्सियां डली हुई हैं और सभी कुर्सियां के सामने एक अलग सा केविन है।

फूटबाल व कपड़े रखे हुए है।

भारत सरकार द्वारा भी चलाई जाती है।

यह दृश्य एक बैंक के सामने का है और यह बैंक एस.बी.आई. का है और बैंक के सामने--